और एक बहोत बड़ा पोस्टर लगाया जिसमें किसी कंप्यूटर के बारे में एडवर्टाइजमेंट दी जा रही है।

घूमने जा रहे है आपस में कुछ बुजुर्ग बातें करते करते सीधा एक रोड पर जा रहे हैं।

किसी भी खेल की शुरू होने से पहले अपना एक फॉमप अप ले रहे हैं तथा खुशी खुशी धूप की तरफ अपना फेस करते हुए दौड़ रहे है तथा साथ ही कुछ साइड में खड़े लोगों ने देख--

किसी एंट्रेंस के ऊपर एक छोटा सा बल्ब लगा हुआ है। वाइट कलर का बोर्ड लगा हुआ है और वाइट कलर का ही इसका गेट है।

उनका एक छोटा सा घर दिख रहा है वो पेड़ के नीचे आराम कर रहे--

गन्नों का करण कलर ग्रीन है।

के सामने किसी फॉरेस्ट एरिया का गेट लगा हुआ है।

ओपन है साथ में एक सिक्योरिटी के लिए येलो कलर का छोटा सा--

और ये व्यक्ति कहीं जाने के लिए जगह देख--

बोर्ड लगा है जिस पर कोई टाइटल लिखा हुआ है। तथा उसके साथ ही एक केमिस्ट की शॉप है तथा उसके ऊपर एक प्लस का साइन बना हुआ है।

बहुत मटकी बाहर का नजारा है।

जिनके डिफरेंट-डिफरेंट कलर है जैसे रेड वाइट येलो पर्पल बहुत सारी लाइटिंग्स है।